दुप्पटा डाला हुआ है ऊपर की एक माला दिखाई दे रही है जो लटकी हुई दिखाई दे रही है गेंदे नीचे की तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही है सामने एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।